ऊपर लोग बैठे हुए हैं। सीढ़ियों के नीचे लोग चल रहे हैं।

चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यह अ बहोत सारे घाँस दिखाई पड़ रही है एक बड़ा सा झाड दिखाई पड रहा है।

एक झाड़ लटक झंडा लटक रहा है और दरवाज़ें दिखाई पड़ रहे हैं।

हेवन में''स सैलून लिखा हुआ है दरवाज़े पर मोस्ट वेलकम लिखा हुआ है --

मेदान के बीचों बीच एक झण्डा रखा हुआ है और लोग खेल रहे हैं।

अ लटक रहा है। स्टूल दिखाई पड़ रहे हैं।

दो शटर लगे हुए हैं जिसमें सामान रखा हुआ है। यह नीले रंग के शटर हैं। बाहर कुर्सियां पड़ी हुई हैं। एक खंभा बना हुआ है।

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यह स्टेशन के पार लिया गया है। स्टेशन का नाम है।

रेस्टोरेंट लिखा हुआ है जिसके सीसे के दरवाजे लगे हुए हैं। उसके सामने सीढ़ियां लगी हुई हैं।

एक पुरुष और एक स्त्री खड़े हुए हैं। उनके हाथ में माइक दिए गए हैं।

प पंडाल दिखाई पड़ रहा है जहा पंडाल में --

और एक आदमी का व्यायम कर रहा है।

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं की यह एक बड़ा सा जिम बनाया गया है नीचे काले रंग की कार्पेट बिछी हुई है उसके ऊपर --

इस चित्र में हम देख प रहे है कि यह एक अ सजावाट की गई है पीछे लाल और --